सफ़ेद कलर का पाउडर डाला जा चुका है नीचे रेत भी पड़ी हुई है गिट्टी पड़ी हुई है सीमेंट पड़ी हुई है ईंटाऐ पड़ी हुई है।

ये सड़क पर से जा रहा है पीछे की तरफ बड़ा सा मार्केट नजर आ रहा है ये बहुत सारी दुकाने है।

चारों तरफ गिट्टी और सीमेंट और रेता का मसाला लगा हुआ है यहाँ पे लोहे की राडे भी लगी हुई है कुछ मिस्त्री यहाँ पर काम कर रहे हैं।

यहाँ पर पंडित जी सामने की तरफ खड़े हुए हैं कुछ महिलाएं सामने की तरफ बैठी हुई वर वधु बैठे हुए हैं।

कुछ किताबें पड़ी हुई है सामने की तरफ बच्चियाँ निरित्य कर रही हैं जो एक दुर्गा के डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है।